दो नाव लगे हुए हैं।

जो ऊपर में गोला टाइप का सजाया गया है रेड और नीला कलर से।

उसके सामने एक गुलाबी कलर का सीढ़ी भी बनाया गया है।

इसके नीचे फर्श भी लगाया गया है। इसके सामने कुछ सीढ़ी टाइप के--

ऊपर चढ़ने के लिए भी इसमें बनाया गया है

और ऊपर में लाइन भी है।

अधिक से अधिक पानी बह रहा हैं।

व्यक्ति बार को कटवा रहा है।

उसके ऊपर काफी सारे झंडा भी लगे हुए हैं।

उसके पीछे एक पेड़ भी है।

स्कैनर भी रखा गया है और उसमें कुछ गराज में सामान भी रखा गया है और इसमें बैठने के लिए भी बनाया गया है और इसमें काफी सारे लाइट भी बर रहे हैं।

प्लास्टिक भी रखा हुआ है।

उसके बगल मे चावल का बोरा भी रखा गया है और--

यहां पे एक मिठाई रखने के लिए काउंटर बनाया गया है।

ये चारों ओर से खिड़की लगा हुआ है।

यहा पे एक बड़ा सा सरकारी विभाग है।

व्हाइट कलर का है और दूतल्ला है।

और यहां पे एक हैप्पी बड्डे भी लिखा हुआ है।

उसमें एक बड़ा सा एक डेग भी रखा हुआ है।

दरवाजा भी लगा हुआ है और उसका नीचे--